एक गराज है यहां पर एक बहुत खटारा गाड़ी है और उस गाड़ी का आगे का पार्ट खोल दिया गया है।

एक पुल है जिसके नीचे में एक नदी है जो कि बहुत बड़ा है।

वहाँ पर बहुत सारा कलर का बाल्टी रखा हुआ है और राइट साइड में बहुत सारा पाइप रखा हुआ है।

ड्राई बिछाया गया है और राइट साइड में एक बिल्डिंग जैसा बना हुआ है।

एक दुकान है जिसके ऊपर में एक कोको कोला का पोस्टर लगा हुआ है।

एक फैक्ट्री है जहां पर सारा मजदूर को इकट्ठा किया गया है और एक आदमी उन लोगों को समझा रहा है।

और वहां दुकान में एक आदमी कॉपी लेकर बैठा हुआ है और एक आदमी बैठा हुआ है।

एक पब्लिक स्कूल का प्रोग्राम हो रहा है। जहां पर चारों तरफ पंडाल बना हुआ है।

मंदिर है बहुत सारा मंदिर है जो की सफेद कलर का है।

और वहां दुकान में मोबाइल का कौवर और मोबाइल रखा हुआ है और एक वहां पर फोन पे का इस्कैनर है।

और बीच में लाल कलर का बना हुआ है और वहां पर लिखा हुआ है इंग्लिश में और नीचे में बहुत सारा बाइक खड़ा है और दो बुलोरो खड़ा है ।

और बाहर में ही दो है जिसके ऊपर में ठंडा का बोतल है।

और बहुत सारे पेड़ को चारों पट्टी ईट से घेर दिया गया है।

डेयरीमिल्क चॉकलेट रखा हुआ है और ऐसे ऐसे कई चॉकलेट रखा हुआ है और दीवार में कोंटर मे सजाया गया है।

अबूल रखा हुआ है और पानी का एक बोतल रखा हुआ है।

ढाबा है जिसका नाम है ब्रोथट्स ढाबा उसके बाहर में दो गेट लगा हुआ है।

जिसके ऊपर में दो ब्लैक टंकी लगा हुआ है।

और वहां पे एक आदमी बैठा हुआ है टेबल पर बोतल में बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

बीच में एक बहुत बड़ा है जिसमें चिड़िया का चित्र बनाया और अलग अलग घोड़ा का चित्र बनाया घर का चित्र और राइट साइड में भी चित्र बनाया है।